एक लड़का बैठा हुआ दिख रहा है ऊपर मशीन कलर ब्राउन दिख रहा है पीछे ब्लैक एण्ड व्हाइट दिख रहा है जो की बहोत ही अच्छा लग रहा है बहोत ही--

जैसा कि हम देख सकते है सामने हमको सुंदर नजारा दिख रहा है हमको स्विमिंग पूल दिख रहा है जो कि बहुत ही प्यारा है और बहुत ही बढ़िया स्विमिंग पूल दिख रहा है हमको पेड़ दिख रहे ही जो कि हरे हरे दिख रहे है जो कि बहुत ही बढ़िया दिख रहे है।

पीछे हमको दिख रहा है जो की बहोत दूर दूर खाली खाली दिख रहा है ऊपर खुल्ला आसमान दिख रहा है जो की बहोत ही अच्छा और सुंदर दिख रहा है और बहोत ही प्यार दिख रहा है और ऊपर हमको खुल्ला आसमान दिख रहा है ।

जिम का हॉल दिख रहा है जो की बहोत बड़े दिख बढ़ है हॉल मे पत्रे लगे हुए दिख रहे है साइड मे हमको ए सी लगे हुए दिख रहे सफेद कलर के पंखे दिख रहे है जो की बहोत अच्छे दिख रहे है इन सब ने कपड़े पहने हुए है --

जेसकी हम देख सक्ते है सामने हमको मल्टी दिखक रही है जो मल्टी बहोत बड़ी दिख रही है मल्टी हमको सफेद कलर की दिख रही है जिसमे महरून और पीले कलर का शैड दिया हुआ दिख रहा है जोकी बहोत ही अच्छा लग रहा है बहोत ही सुंदर लग रहा है।

जैसा की हम देख सकते है सामने हमको एक झूला दिख रहा है झूला हमको ऊपर से नीचे आते हुए दिख रहा है एक गोल झूला जिसमे लोग बैठे हुए दिखते इसके दो पाइप नीचे की ओर दिख रहे है जो की बहोत सुंदर लग रहे है।